पर एक कांच की बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है उधर पर कुछ बिल रि एंड रिचार्ज पे यूं आर लिखा है पोस्टरों में और भी कुछ लिखे हुए है। यहाँं --

काम वाले दिखाई दे रहे हैं जो रोलर से कुछ करते हुए नजर आ रहे है। दोनों के हाथ में रोलर है और दोनों व्यक्ति काम कर रहे ऐ । इनमें से एक व्यक्ति ने केप लगा रखी हुई है और ये --

मन की दुकान दिखाई दे रही है जिसपे चिप्स सुपारी और शैम्पू अलग-अलग ब्रांड के और टोज़ बिस्किट और भी बहुत सारी चीजें जेसे साइड में चूड़ी दिखाई दे रही हैं।

और सूरज जैसा लग रहा है जैसे कि डूब रहा हो जोकि शाम का समय हो और यहाँं पर बैठने की रोड के साइड बैठने की व्यवस्था भी हो। साइड में हरे-हरे कलर की दूबा भी दिखाई दे रही है और एक बड़ा सा खंभा --

यहाँ पर दूर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं हरे-हरे और आसमान नीला दिखाई दे रहा है और पानी नदी में कुछ ज्यादा ही अधिक दिखाई दे रहा है।

और कई घर भी दिखाई दे रहें हैं और बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है और लाइट के अनेक खम्बा दिखाई दे रहें हैं और छोटे-छोटी और हरे-हरे पेड़ भी बड़े-बड़े थोड़े बोहत दिखाई दे रहें हैं।

ग्राउंड के पास में थोड़े बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बड़ी सी बिल्डिंगे दिखाई दे रहीं हैं। बिल्डिंगो का कलर सपेद कलर का है और यहाँ पर काफी प्यारे-प्यारे फूल भी हैं।

एक रस्सी पे मैगी के पैकेट और कई अलग-अलग चीज़े जैसे अमचूर पाउडर और भी मसाले टंगे हुएं हैं। मैगी की पॉलिथीन पीले कलर की और यहाँ पर --